कुछ कुछ चेयर में आदमी लोग बैठें हुएं हैं।

यह फोटो एक जिम एरिया का है जिसमें एक पोस्टर बना हुआ है जिसमें एक आदमी जिम कर रहा है।

नीचे में बहुत सारा लाल रंग का कुर्सी है जिसमें दो तीन बच्चे बैठे हुए हैं।

उनके बगल में एक और बच्चा है जो सफेद कलर का बैलून पड़ा हुआ है ।

उसके नीचे बहुत सारा प्लास्टिक का बोरा टाइप में कुछ कुछ रखा हुआ है।

सब सामान एकत्रित रखे हुए हैं।

पीछे एक लाल रंग का फ्रिज है जिसके ऊपर कोको कोला रखा हुआ है।

दुकान में चश्मा पहनी हुई मास्क पहनी हुई एक महिला दिखाई दे रही है।

यह फोटो रात के समय का है रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ है।

ऊपर में लालटेन के डिजाइन में बहुत सारा लाइट लगा हुआ है।

दो तीन महिला भी सामने मे खड़ी नजर आ रही है।

पीछे बहुत सारा पेड़ है दिन का समय है धूप आ रहा है।

नीचे बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

नीचे बहोत आदमी खड़े है रंग बिरंगा कपड़ा पहन के--

फोटो एक हरे भरे प्लेग्राउंड का है जिसमें बहुत सारे लड़के लोग फुटबॉल खेल रहे हैं।

सात आदमी ये खेल खेलते नजर आ रहे हैं।

दो बड़ा जैसा बिल्डिंग है उसमें ग्लास का सफेद जैसा विंडो बना हुआ है।

यह फोटो बहुत ही भीड़ भड़का वाला एरिया का है।

सामने दो दुकान नजर आ रहे है पहला वाला दुकान में लाल रंग से अजंता डायरी लिखा हुआ है।

उसके सामने एक मॉनिटर लगा हुआ है जिसमें कैमरा का सब कुछ दिखाई दे रहा है।

दुकान के रेक में बहुत सारा कार्डबोर्ड का डब्बा है जिसके अंदर कुछ कुछ सामान रखा हुआ है।

ऊपर में क्रीम कलर का टाइल्स है।

महिला पुरुष दोनों स्वेटर पहनके गमछा वमछा ओढ़ के खड़े हैं।

अगल बगल बहुत सारा कॉर्टून का डब्बा है जिसके उपर पंखा का फोटो बना हुआ है।

सामने दरवाज़ा है जिसमे एक यलो कलर का पर्दा भी है।

सामने बहुत सारा आदमी है जो हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के लिए रुका हुआ है।

रूम में अंधेरा है पीछे एक दो लाइट जला हुआ है।